जहाँ पर एक पलंग रखा है जिस पर प्लेन कलर के चादर बिछे हुए है।

और यहाँ पर कुछ लोहे की जालियाँ भी दिखाई दे रही हैं।

चेयर भी दिखाई दे रही जिसपर क्रीम कलर पैंट हैं।

यहाँ ऊपर बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए है जहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे है।